इ सुजुवी सुजुकी का शोरूम है। शोरूम में बाइक्स रखी हैं। बाहर एक बाइक रखी हैं।

साइड मे दो पेड़ हैं जिसके हरा कलर हैं। पीछे भी दो पेड़ हैं। सामने चैनल गेट है इसमें बहोत सारी खिड़कियाँ हैं। चैनल गेट का कलर ब्राउन कलर है।

यह एक स्कूल है साइड में पेंटिंग है जिसमें बोहोत सारे बच्चों के चित्र बने हुए हैं जो हाथ में कुछ लिए खड़े है ए बी सी डी कर के।

इसमें से एक लाल कलर की शर्ट है। एक ब्लू है। एक एक ने बनियान पहन के रखी है। ऊपर पेड़ है। कुछ पत्तियाँ हैं।

हरा कलर का है। एक बाइक रखी है लाल कलर की। इक्विपमेंट रखे हैं। एक एयरप्रेसर ब्लू कलर का है।

यह सामने ए_ट ए_टी_एम है। सामने एक कार रखी है। कुछ लोग खड़े हैं। कोई बात कर रहा है।

चे साइड भवो मंदिर का नाम लिखा हुआ है साइड में एक छोटी-सी लाइट है।

गाड़ी खड़ी है एक लियो है एक लोना है।

कुछ बच्चे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं ऊपर प दो पंखे लगे हुए नीचे जमीन का कलर --

यह एक किनारा है। जिसपे बोहोत से नाव रखे हैं। कुछ लोग नहा रहे हैं। नाव का कलर सफ़ेद है ऊपर से अंदर से --